पूल में आते हैं | यहाँ पे यह पुल बहुत ही बड़े हैं । पुल में बहुत सारी गाड़ी पार होती है । यहाँ एक लड़का नहा रहा है । नदी में बहुत ही पानी बह रही है ।

यहाँ एक बहुत सारे मंदिर हैं एक जगह पर हैं जगह पर से पानी गिर कर मंदिर में पूजा करते हैं यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है उसमें ये जल देते है।

यहाँ पे एक मैजिक गाड़ी को लाई गई है। यह गेरेज की बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारी लाइट भी लगाई गई है। काफी सारे आदमी गेराज में आते --

यह एक नदी है। यह नदी बहुत ही बड़ी है। इस नदी में बोहत सारे आदमी यहाँ पे आते है। इस नदी में नहाने के लिए भी आदमी आते है।

यह एक चाय-कॉफ़ी की दूकान है इस दूकान में बहुत ही अच्छे चाय-कॉफ़ी मिलती है यहाँ पर बहुत सारे आदमी चाय-कॉफ़ी पीने के लिए --